यह कॉलेज के ग्राऊंड की फोटो लग रही है | यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े है और एक बाइक काफी सारी काफी सारे लड़के-लडकियां हैं यहाँ पे पेड़ है |

ये समस्यों का चर्च है और अ इस चर्च के ऊपर इनका प्लस का साइन बना हुआ है। जिसे ये भगवान का साइन मानते है अपने मजहब में धर्म में। और --